बहुत सुंदर सजा हुआ है यहां पे किसी का शादी होने वाला है और यहां पे मां अंबे फूल भंडार करके अपना लगाया हुआ है प्रचार के लिए।

खरीने के लिए लोग यहाँ संपर्क करता है यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है।

ये जो बिल्डिंग है इसमें लिखा हुआ है खुराना ट्रेवल्स संजय टूर एंड ट्रेवल्स यानी यहाँ पे दूर-दूर जाने के लिए गाड़ी मिलता है।

ये द-दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं।